भवां फर्श पर हमण टैल्सन दिखेण लगीं जु लाल उ पीला रंग किना सामनि हम तें कुछ लोग दिखेण लग्यां मूर्ति क ऐथर अगल-बगल हमें मूर्ति का डालन दिखेण लग्यां।